कुछ फूलों की मालायें दिखाई दे रही है --

इस तस्वीर में मुझे एक बस दिखाई दे रही है पास में कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं जिसके पास एक बोरा जैसा भी दिखाई दे रहा है।

इसकी छत है जो टेनों से बनी हुई है सामने की तरफ कुछ और बसें भी दिखाई दे रही है और कुछ बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ लकड़ी की बनी हुई टेबलें और कुर्सी दिखाई दे रही ऐसा लग रहा है कोई होटल होना चाहिए।

इस से तस्वीर में मुझे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कोई दुकान के अंदर है पास में कुछ है।

कांच का बना हुआ डब्बा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ लाइटें भी जल रही है पास में कुछ रेलिंगें भी दिखाई दे रही है जिनपे कुछ रेड --

इस तस्वीर में मुझे एक मोर दिखाई दे रहा है जो कोई ईंटों की बनी हुई दीवार पे दिखाई दे रहा है पास में कुछ--

कुछ बोतले भी दिखाई दे रही है कुछ लाइटे भी दिखाई दे रही कुछ लकड़ी के बने हुए गेट भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही है पंखा भी दिखाई दे रहा है।

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं कुछ गार्डन जैसा भी दिखाई दे रहा है इसके बाहर जो रेलिंग बनी हुई है वो सरियों से बनी हुई है।

व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कोई दुकान के अंदर है दुकान जो कपड़े की है।

हरिहर छतर का नाम भी दिखाई दे रहा है एक पेड़ दिखाई दे रहा है कुछ तार भी दिखाई दे रहे हैं।

भालू राह घाट इस तरह का एक नाम भी दिखाई दे रहा है एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है कुछ टनों की बनी हुई छत भी दिखाई दे रही है कुछ व्यक्ति --

दो मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ पोल भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही हैं कुछ तार भी दिखाई दे रहे हैं।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

टेबल दिखाई दे रही है जिसपे कही पर्दा लगा हुआ है इसपे एक कंकाल भी दिखाई दे रहा है।

फूल भी दिखाई दे रहे हैं और टेंट भी दिखाई दे रहे ऐसा लग रहा है कोई शादी में गए हुए हैं।

अस्पताल दिखाई दे रहा है पास में एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है।